पीछे की तरफ मुझे बहोत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने मै एक नदी देख पा रही हूं।